यह दृश्य एक धार्मिक कार्य आयोजित किया हुआ प्रतीत होता है।

जिसके चारों ओर हरियाली है।

आमने एक सीढ़ी नजर आ रही है उसके ऊपर कु चतरे चबूतरे के तौर पर बने हुए नजर आ रहे हैं।

दो सज्जन बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।

जहां पर कई तरह की बसें लगी हुई है।

यह दृश्य एक खुला हुआ मैदान का प्रतीत होता है।

जहां पर दो गाड़ियां लगी हुई है सामने एक बहोत ही विशाल पेड़ खड़ा है।

इसके द्वारा के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी अक्षरों में स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

ए_टी_एम का द्वार बंद नजर आ रहा है।

उसके ऊपर एक काले रंग की टी_वी लगाई गई है।

यह दृश्य एक बाग़ का है जहां पर चारों ओर हरियाली छाई हुई है।

ये चबूतरा खाना बना हुआ नजर आ रहा है।

इस झील पर पांच छे नाव है।

यहां पर विभिन्न प्रकार के पहलवानी करने की वस्तुएं रखी हुई है।

यहां पर कई युवक और युवकाएं बैठे हुए हैं।